यहा पर बड़ा सा मंदिर है मंदिर पूरा काला काला दिख रा ए कुछ कुछ भूरा टाईप से दिख रा ए

पुराना है और बादल वाइट और हल्का ब्लू कलर का दिख रा ए और मंदिर पत्थरो से बना हुआ है